ये ऑरेंज कलर से पोता हुआ है।

सामने की ओर बड़ा सा गेट है जहां से लोग आते जाते हुए दिखाई दे रहे है बाइक पे एक व्यक्ति जाता हुआ दिख रहा है।

इस तस्वीर में देख सकते हैं यह श्री बाबा सुरेसवर महादेव का मंदिर है जहाँ राम की जन्म जनकी मंदिर भी है राम जनकी मंदिर।

तो इस पर सोफ़ा सेट लगा हुआ है।

इस तस्वीर में हम देख सकते हैं यहां काफी बडा --

और यहाॅं पर खंभे भी दिखाई दे रहे हें ।

इस तस्वीर मे हम देख सकते हैं यहां बहुत सारा पानी दिखाई दे रहा है हमको नाव दिखाई दे रही हैं नाव पे एक व्यक्ति खड़ा है जो फोटो खिचवा रहा है।

बहुत बड़े-बड़े पेड़ दिख रहे है आस-पास।

बड़े-बड़े खंभे दिख रहे हैं तार दिख रहे है।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

यहाँ हम देख सकते हैं काफी सारे गमले दिख रहे हैं मनी प्लांट दिख रहे हैं पिंक कलर का फ्लावर दिखाई दे रहा है।

बहुत सारी बोरियां जमी हुई दिख रही हैं।

घर का कुछ काम होता हुआ दिख रहा है जहां पर बहुत सारे गट्टीयों का ढेर है।